भगवान बुद्ध एवं उनके शिष्यों की मूर्तियां है यह भगवान बुद्ध की --

मंदिर है भगवान बुद्ध का मंदिर है भगवान बुद्ध बैठे हुए है ध्यान लगाए हुए है।

इनके ऊपर पंखे लगाए गए हैं।